फोटो के सामने जैसे मै देख पा रहा हु कुछ पत्ते दिखाई दे रहे जो कि पीपल के पेड़ के मुझे दिखाई दे रहे है।

लाल कलर में तीन खंबे भी बीच चौराहे पर लगे हुए हैं।

ये एक ग्राउंड की फोटो है जिसमें कुछ लोग योगा कर रहे हैं।